और यह बगान बहुत बड़ा है और चारों तरफ से इसे घेर दिया गया है बांस की लकड़ी से बांध के--

सामने एक बड़ा सा शोरूम है वो भी मोबाइल की--

और बाहर पेड़ अह बहुत सारे किनारे गमले में पौधे लगाए गए हैं और बगल में ब बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे हैं।

और बाहर में बहुत ही बड़े बड़े गाड़ी रखे हुए हैं चरपहिये खड़े हैं बाइक --

एक लड़का बोल फेंक रहा है तो दो लोग के पास बैठ है और एक बैटकिंग बैटिंग कर रहा है।

और किनारे ग्राउंड के सफेद रंग का बॉर्डर बना हुआ है।

और बहुत ही साफ सुतरा है ग्राउंड और किनारे एक पन्नी दिख रही है ग्राउंड के बी बगल में --

वो भी सफेद रंग का है ऊपर बहुत बड़ा लाइट लगा हुआ है।

और मंदिर के अंदर कुछ लोग हैं जो खाना खिला रहे हैं और बाहर में है बोहोत सारे मोमबत्ती जलाए गए हैं।

सामने मैं देख पा रही हूँ कि एक हॉस्पिटल का कैबिन है।

और यहाँ पे एक सफेद रंग की मशीन है और एक टेबल है जिस पे एक और मशीन रखी हुई है उस पे एक लैपटॉप भी रखा हुआ है।

मैं यहाँ पे टेबलें भी रखी हुई हैं टैबल पे बैठने वाला टेबल --

और यहाँ पे जो दीवाल है वो इस इस्काई ब्लू कलर से कलर किया गया है और शीशा लगा हुआ है।

बहुत ही साफ सुथरी है रेस्टोरेंट और एक किचन है जहाँ पे काफी सारे सामान रखे हुए है।

जोकि काँच में रखे गए हैं कुछ गत्ते बना के --

और यहाँ पे लकड़ी के अलमारी बनी हुई है एक किनारे और लकड़ी का एक कुर्सी भी रखा हुआ है ।

यहां पे चार पांच लोग चार लोग आये है घूमने।

सामने में देख पा रही हूं कि बड़ा सा दुकान है और दुकान के अंदर एक अंकल है जो बेच रहे हैं।

टेबल के ऊपर मतलब लैपटॉप रखा हुआ है और कैलकुलेटर है जिससे अंकल हिसाब कर रहे हैं।

दिन का समय है और यहां पे बहुत सारे बिस्किट लमकीन वगैरह वगैरह बहुत कुछ बेचे जा रहे हैं ।

यहां पे एक बड़ी ब्रिज बनी हुई है.

और ब्रिज के ऊपर जो है ट्रेन की पटरी लगी हुई है जिससे ट्रेन आती जाती है ।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

और ईंटें पत्थर है छोटे छोटे और दिन का समय है धूप--

सामने एक बड़ा सा पार्क है पार्क में काफी सारे फूलों के पौधे लगे हुए हैं।

मतलब ईटे की है और यहां पे बगल में जो कि पेड़ लगे हुए हैं उसे चारों तरफ से घेरा गया है उस पे बैठने के लिए--

बहुत सारे केक रखे हुए हैं और बम पावर होती है।

और यहां पे फ्रिज भी रखे हुए हैं और टेबल रखा हुआ है और कांच के बने हुए हैं उसके अंदर बहुत सारे केक रखे हुए हैं।

और आगे बहुत सारे टैंकर वाले गाड़ियाँ हैं।

और बाहर बहुत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं दूर दूर तक और घर भी दिख रहे हैं।

और साइड में पत्थर है पत्थर पे एक लड़का बैठा हुआ है।

और पानी में बहुत ही हरे हरे काई जम गए हैं।

सामने मैं देख पा री हूँ यह बहुत बड़ा शोरूम है यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजे बेचीं जा रही हैं।

और यहां पे फर्श जो है टाइल्स लगाया हुआ है बहोत साफ सुथरा है.

सामने मैं देख पा रही हूँ कि दीवाल दिख रही है।

और यहां पे घर है अंदर और एक औरत बैठी है और इन दीवार पे टोकरियां रखी हुई है लकड़ियों की बनाई हुई।

कुर्सियां लगाके काफी लोग बैठे हैं दो-तीन लोग हैं जो बैठे हुए हैं यहां काम करते हैं।

और यहां आसपास बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिख रहा है और पीछे बड़ा सा घर दिख रहा है।

और बाहर में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स हुए हैं जो कि--

और बगल में यहाँ पे बोहोत सारी लेडीज है ज औरते है बूढ़ी वो सब्जी बेच रही है नीचे बैठ के.

सोफा दिख रहा है और ऊपर का ही फ्लोर दिख रहा है जिस पे बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं ।

और यहां पे ऊपर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है और नीचे जो है टाइल्स लगा हुआ है और बहुत साफ सुथरी है।

एक युवा क्लास है बड़ा सा यहां पे सात लोग हैं जो यहां पे एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं।

और यहां पे कुछ लड़के हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं और गाना गा रहे है एक लड़का सी गिटार बजा रहा है ।

और यहां पे एक थाली रखी हुई है थाली में प्रशाद रखा हुए है और चंदन की लकड़ी रखी हुई है।

और दिया रखा हुआ है और लाइट लगी हुई है।

मतलब जैसे एक गमले रखे हैं फूलों वाले और बगल में दिवालों पे पेंटिंग बनी--

सामने एक मुझे दुकान दिख रही है और दुकान में कुर्सियांरखी हुई हैं तीन--

और ऊपर कैमरा लगा हुआ है और पंखा दिख रहा है।

सामने बोहोत बड़ा कमरा है और कमरे में--

दीवार पे एक साइड में मिरर लगा हुआ है बड़ा सा और दूसरे दीवार पे--

और कुर्सियां रखी हुई हैं और बाजा बॉक्स रखा हुआ है छोटा सा ऊपर पंखा लगा हुआ है।

और लाइट भी बहुत सारे ऊपर लगे हुए हैं फर्स बहुत साफ है टाइल्स का बना है।

और यहाँ दो लड़के हैं जो खरीदने गए हैं और दुकान में एक अंकल है जो बेच रहे हैं।

सामने मुझे रोड दिख रही है और रोड के किनारे एच_ डी_ एफ_ सी बैंक है।

सामने वाले लोगों के दुकान है बड़सा और यहां पे काफी सारे--

यहां पे दहरी बिछा के सजा के रखा हुआ है और एक लड़का है जो बेच रहा है और बगल में एक और दुकान है वहां पर एक लड़का है।

सामने मैं देख पा रही हूं एक कॉफी कैफी है यहां पे दो लड़के बैठे हुए हैं कुर्सी पे--

और टेबल रखा हुआ है उसपे खाना ये लोग खा रहे हैं और यहां पे--

कॉफी भी रखी है और यहां पे बोतल है पानी है नमक भी रखा हुआ है ।

और यहां पे बहुत ही सुंदर लग रहा है रात का टाइम है और लाइट जलाइ गयी है के यहां पे बफर सिस्टम --

सामने मैं देख रहा हूं बड़े-बड़े खेत दिख रहे हैं और खेतों में फसलें लगाई गई हैं।